पीला कुछ नीला और भी बहुत कुछ तरह के यहाँ कप रखे हुए है उधर से एक आदमी आ रहा है कुछ--

बोरो में भी बहोत सारे समाने रखे हुए हैं लगता है वो सारे समान जोकि ये बोरो मैं भर-भर के बेचने के लिए रखे गए हैं तभी कैमरा मैन यह तस्वीर को क्लिक किया होगा।

यहाँ पर बहुत ही सुंदर नजारा स्कूल का स्कूल के चारों ओर आप देख सकते है कितना अच्छा-अच्छा पेड़ लगाया गया है खेलने के लिए प्ले ग्राउंड भी रखा गया है।

आदमी लगा हुआ है साइड में एक मैनेजर भी खड़ा हुआ है जोकि गेट से अंदर जाते हुए नजर आ रहा है इस तस्वीर में एएए --

और उधर बोहोत सारी मशीनें रखी गई है जॉगिंग करने के लिए बॉडी - वाडी बनाने के लिए और यहाँ पर आप देख सकते है बोहोत सारी लाइटें भी लगाई गई है एकदम दिन के जैसा लग रहा है रात --

यह अभी-अभी नजर आ रहे है और आप इधर देख सकते है कुछ बड़े- बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है ओ पेड़ों को जोकि एक महिला पानी देते हुए नजर आ रही है और पानी देके वह --

यहाँ के सड़क के किनारे किनारे पर देख सकते हैं आप यहाँ पे काफी बाण लगाई गई है जो की बहुत अच्छे बाण एक दम छोटे-छोटे पेड़-पोधो जैसे लग रहा है बहोत ही सुंदर नजारा यहाँ--

वापस आ जा रहै है शायद इसके अंदर कुछ अदृश्य वाहन भी बनाया गया होगा।

सड़क के किनारे मे हम देख सकते हैं बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं दूर-दूर मे एक पेड़ लगे हुए हैं एक जल टंकी भी दिखाई दे रही हैं जिसके खंभे--

यह उसकी के टाइम का समय है इसको लिया गया है घर बनाने के टाइम --

ये सारे बम्बू इधर निकाले नहीं है निकालने वाले होंगे तभी किसी ने यहाँ की फोटो खींच कर इस वेबसाइट पर डाल दिया है कंप्लीट नहीं हुआ है कम्पलीट होगा तो --

ये तस्वीर को देख के लग रहा है की ये मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई है ये सब सारे लोग जो की यह भगवान पे बहुत ही भरोसा करते है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बहुत सारे रखे गए हैं।

इन मूर्तियों को रखने के बाद इनकी आरती भी की जा रही है लेकिन इन लोग समझ नहीं पा रहै हैं कि पहले कितना --

बस चलते ही जा रहै है चलते ही जा रहै है नाव जोकि येल्लो और हरा कलर का है और यहाँ पे दो लोग इसपे --

बोट राइडिंग कर रहे है लेकिन किस लिए कर रहे है पता नहीं चल रहा है शायद इन लोगो को पता ही नहीं है की कहा जाना है।

यह आप देख सकते है लाइटों का आकर्षण बहुत ही सुंदर लग रहा है लगता यह होटल में जाने का मन लग रहा है मुझे भी--

ये देखने से मुझे कोई यहाँ पे गुफा लग रही है गुफा के सामने जोकि एक बंदा खड़ा हुआ है एक लड़का खड़ा हुआ है जोकि गुफा में अंदर जाना चाहता ही नहीं पता नहीं --

यह तस्वीर को लिखने से लग रहा है कि ये कोई बर्थडे पार्टी या फिर एनिवर्सरी के लिए ये बोर्ड को बुक किया होगा बोहोत ही सुंदर से डेकोरेशन और --

दाहिनी ओर पांच बायी ओर पांच ऐसी ही बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई है कुछ कप भी रखे हुए है जो एंटीकपीस हो सकती है यहाँ पे--

यह देखने से मुझे चर्च का सीन लग रहा है यहाँ पे चर्च जहाँ पे सारे लोग मन्नत मांगने जाते हैं चर्च के बाहर अभी--

काफी भीड़ लगे हुए हैं और साइड में कुछ लोग कैन्डल भी जला रहै हैं क्योंकि इनका प्रथा उथा भी हैं कैंडल जला के जाने का--

मूर्ति बनाई गई है मूर्ति के ऊपर जो कि पत्थर जैसा सजाया गया है पत्थर के ऊपर भी एक पत्थर रखा गया है जो की बहोत ही सुंदर हो सकता है।

ये देखने से कोई शादी विवाह का घर का सीन होता है वह लग रहा है यहाँ पे जहाँ पे --

शर्ट भी पेहना हुआ है उ नट से मेन गेट से कुछ लोग आते हुए भी दिखाई दे रहे है।

ज्यादा भेड़ा भेड़ है लग रहा है मुझे यहाँ पे आप देख सकते है कितने बच्चे जोकि खेलने के लिए आए है ग्राउंड में शायद इनके आसपास में कोई भी इतना बड़ा ग्राउंड नहीं होता --

ये कोई देखने से मुझे किसी का घर लग रहा है यहाँ पे लगता है यहाँ पे नमाज पढ़ा जाता होगा इस घर में इस घर का कलर बिल्कुल व्हाइट रखा गया है यहाँ पे --